यह भी एक जंगल का दृश्य प्रतित होता है आगे एक बकुला दिखाई दे रहा है। जिसका चोंच लंबा है और यह अ हरे रंग का गाय ग्रास पर खड़ा हुआ है त --

यहाँं पर एक बहुत बड़ा गेट दिखाई दे रहा है जिसका कलर ब्लू है तथा यह जालीदार गेट दिखाई दे रहा है इसके ऊपर कुछ बाइजिंग की गई है।

यहाँं घास पर हरे -हरे पर घा-घास उगे हुए हैं। एक नीच पत्थर दिखाई दे रा दिखाई दे रहा है। कुछ व्यक्ति आपस में खेल रहे हैं।

मे एक बेड पड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं जिसपे बहोत सारे तकिये लगाए गए हैं। ज्यादातर तकिये सफेद कलर के दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर ए कुछ बहुत से बैट रखे हुए हैं जिसके ऊपर कुछ लिखा गया है। उसके कल कलर का म्म रंग बहुत अजीब अजीब है। अ अलग-अलग है।

एक रोड दिखाई दे रही है। पीछे एक बालू रखा गया है। हरे-हरे पौधे दिखाई दे रहे है। एक कुर्सी दिखाई दे रही है। एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है। कु --

और यहाँ पर एक जाली जैसा कुछ दिखाई दे रहा है जिसको ग्रीन कलर से पेंट किया गया है यह देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है।

ऊपर नीला आकाश साफ तौर पे देखा जा सकता है अगल-बगल में भी कुछ पेड़ वगेरा लगाए गए हैं। सामने कुछ बैटरी से चलने वाली रिक्शाए भी दिखाई दे रही हैं।

यह एक साइकिल स्टोर दिखाई देता है जिसमें बहुत ही बड़े-बड़े साइकिलें रखी गई हैं। एक लाईन से तथा छोटे-छोटे साइकिल भी रखे हैं तथा बहोत छोटे लड़के के खेलने के लिए भी साइकिल रखी गई हैं। आगे भी कुछ साइकिल रखी गई हैं।

हरे-हरे घास दिखाई दे रहा है पीछे भी हरे-हरे घास दिखाई दे रहे हैं। इसके आँख का कलर काला है तथा इसके पैरो का कलर भूरा है। इसके पीछे का कलर सफ़ेद व काला प्रतीत हो रहा --